छबि मैं हमे एक ईधन पम्प का द्रश्य दर्शाया जो की पूर्ण रूप से खाली प्रतीत होता है ईधन पम्प आम तोर पर ईंधन डलवाने की जगह होती है।

मोटर रिक्शाएं काले और पीले रंग की दर्शाई गयी हैं। वही मैदान के एक ओर बड़े- बड़े पेड़ भी देखे जा सकते हैं।

इनमें से कुछ नीले कुछ सफेद रंग की गाड़ियां दर्शाई गई है।

इमारत के बाहर कुछ लोग चलते हुए दर्शाये गए हैं। इमारत सफेद रंग में रंगा देखा जा सक --

छवि में हमें एक बहुत ही बड़ा और खाली मैदान का दृश्य दर्शाया गया है जहां मैदान के बीचो- बीच कुछ लड़के खेल में व्यस्त हैं ।

इसमें हमें एक बहोत ही बड़े एवं भव्य मस्जिद का की इमारत का दृश्य दर्शाया गया है।